यहाँ पे एक मंदिर बना हुआ हैं जहा ऊपर वाटर कलर का पेंट है देख सकते हैं स्काई बहुत बढ़िया लग रहा हैं यहाँ पे देखिये कितना अच्छा लग रहा हैं देखने में बहुत बढ़िया अच्छा लग रहा हैं।

हेलो गाइस और ये दिखिए यहाँ पे चारो तरफ पेड़ ही पेड़ पौधे हैं हम देख सकते हैं कितना बढ़िया लग रहा हैं देखने में काफी अच्छा तरीके से लोग अपना काम कर रहे हैं देखिये यहाँ पर कितने सारे लोग देखिये यहाँ पर कितना बढ़िया काम चल रहा हैं यहाँ पर देख सकते हैं।

और ये देखिये यहाँ पर क्या हो रहा हैं काफी अच्छा तरीका अपनाया है इन लोगोने देखिये खेलने का देख सकते हैं आप काफी बढ़िया।